यहाँ पर लाइट लगी नजर आ रही है और कुछ पोस्टर भी लगे हुए नजर आ रहे है यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहुत सारी मछलियाँ नजर आ रही हैं जो की एक बड़े बर्तन में रखी हुई दिखाई दे रही हैं।